और बहुत बड़ बहुत बड़ा पेड़ भी है यहा पे एक आईना भी है और बहुत-बहुत सारी दुकान भी है और यह पर बहु-बहुत--

--दिखाई दे रहा है पेड़ पौधे साइड में है और यहाँ पस --

यहाँ पास और दुकान भी हैं और दो-तीन तीन इंसान भी हैं और कुछ-कुछ और हैं और--

यहाँ पास बस एक बच्चा झूला झूल रहा है यहाँ पास में पेड़ भी है यहाँ पास और बस जैसे उधर गाड़ी भी खड़ा हैं।